और उपराऊ पानी आ रियो है नीचे भाठा ही भाठा पड़िया है और यह हरा हरा बड़ा बड़ा पेड़ पोधा लाग रिया है।